और यहां पर इस नाव के ऊपर--

जिसके ऊपर इंडियन पोस्ट का बोर्ड लगा--

बड़ा सा प्लेग्राउंड है और यहां पर बहुत सारे लड़के यहां खड़े हुए हैं।

गेट के रस्सी को पकड़े खड़ा है यहां पर कुर्सी ब्लैक कलर की डली हुई है।

और यहां पर आइडिया सिम का यहां टैटू बना हुआ है।

प्रोग्राम चला हुआ है बहुत बड़ा यहां ग्राउंड है।

बहुत से बीच में पत्थर का--

इस फोटो में दिखाया गया हैं।

एक आदमी आ सामने से आ रहा है।

हां एक बड़ी सी जे_सी_बी खड़ी हुई है।

यहां पर एक बड़ा सा गेट है लोहे का और बड़े बड़े यहां पर पेड़ दिखाएं गए हैं।